और कुछ सामने की तरफ लोहे की रेलिंग भी नज़र आ रही हैं पीछे बहुत सारे झाड़-पेड़ भी नज़र आ रहॆ हैं।